और बहोत सारे लोग भी वहां पर खड़े हैं।

हरा कलर का है वहां पर एक ए_सी भी लगी हुई है रूम छोटा सा है।

टेबल के तीन ड्रॉ खुले हुए हैं नीचे का ड्रॉ लाल रंग का है और वह बहोत बड़ा--

गोल आकार में रखे हुए है वहां पर कुछ--

सामने में बहोत बड़े बड़े पौधे हैं।